और बहुत अच्छा अ यह मैट भी बिछा हुआ है जो कि रेड कलर और येलो कलर की मैट है और उससे बहुत आदमी भी है।

और इसके एल्वेस्टर जो है ऊपर में वाइट कलर का लग रहा है उस एल्वेस्टर के पीछे एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी है।

यह हरिनगर का रेलवे स्टेशन है जो कि ब्लैक कलर से लिखा गया है बोर्ड टांगा हुआ है लिख के और खोल है कि यहां पे एक आदमी है जो अपने--

येलो कलर का शर्ट पहन के अपने माथे अपने गर्दन पर एक बैग टांगे हुआ और हाथ में एक बैग रखे हुए इस साइड भी बैग रखे हुए है।

यह कटर मशीन है अं जिससे हम लोग--

ब्लैक कलर के डिब्बा में रख के पैक किया गया है।

ऊपर अ नीचे दुकान है और हेलमेट एक दिख रहा है जो की ब्लैक कलर की हेलमेट है दुकान खुली है दुकान के ऊपर --

और ये बहुत सारे फल रखे हुए हैं सब्जी रख सब्जियां रखी हुई हैं।

के आगे ऐसा मानिए कि बेंच लगाओ और अ खिड़कियां भी दिख रही है जिसके पीछे शायद यह फोटो है खिड़कियां नहीं है फोटो है किसी चीज की --

ऐसा मानिए कि अ हां उधर की तरफ आगे की तरफ जा रहे हो हूला --

कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहन के खड़ा है उधर एक ब्लैक कलर के छोटा सा टेबल रखा हुआ।

यह बस्टर डेरी फॉर में है जहां पर पुतला महिलाएं दो तीन महिलाएं हैं जो कि खड़ी है।

मैं टेबल रखा हुआ है छोटा सा स्टूल जिस पे हम बैठ सकते हैं फोन और उधर माला वगैरा भी टांगी हुई है बहुत सारी जो की--